जिसपे बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ है एक लड़का है जो जा रहा है चलते चलते।

हाथी घोड़ा बना हुआ है।

यह एक बुक का शॉप है यहां पे ढेर सारा बुक है।

कैमरा भी लगा हुआ है कांच का फर्श है कुछ समझा रहे हैं इन लोगों को।

एक फॉल है जहां से पानी गिर रहे है दो दो तरीके से।

ढेर सारे बुक है आस पास।

एक गाड़ी है जिस पे भैया कलर चढ़ा रहे हैं।

बहोत अच्छा आसमान है खुली आबादी क्षेत्र में पिलर दिख रहा है।

और दीवाल पे टी_वी लगा हुआ जिसमें गाना बज रहा है एक लड़की दिख रही है उसमें।